एक चर्च की है जहाँ पर बहुत से लोग ठहरे हुए है पीछे की ओर कुछ पौधे है चर्च की दीवारे सफेद रंग की है।

ये एक सड़क दिखाई दे रही है जहाँ पे बहुत से रिक्शा चल रहे हैं ये रिक्शा नींले और गुलाबी रंग की है पीछे की ओर एक बहुत बड़ा मकान है जो हरे रंग का है।

चित्रा में एक कॉलेज नज़र आ रहा है और जहां ये बहुत बड़ा कॉलेज है सामने की ओर कुछ छात्राएं ठेहरी हुई हैं और मोटरसाइकिल रखी हुई--

और नाई अपने अम एक हाथ से बाल कटवा काट रहा है।

चित्र में एक मकान दिखाई दे रहा है जहाँ पर एक सेलोन की दुकान नजर आ रही है।